एक व्यक्ति नजर आर हा है खुला आसमान नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति नज़र आ रहा है| दो बसें नज़र आ रही है।